और आदमी किताब लिए हुए दिखय दे रह हे और काफी ज्यादा संख्या में भीड़ नज़र आ रहा है और हाथ में किताब ले रखी है।

इस तस्वीर में दिखाय दे रहा है की यह व्यक्ति जो अपनी खुद की तस्वीर लेता दिखाय दे रहा है।

ओर यहा पर निम का काम हो चूका है ओर यहा इस तरफ यहा पर सलिए पड़े दिखाय दे रहे है इस व्यक्ति की काफ़ी अच्छी तस्वीर दिखाय दे रही है।

और एक पास में ऑटो मोटर साइकिल झाकी इलेक्ट्रॉनिक ऊ चाल खड़ी दिखाई दे रही है पीछे पोस्टर भी लगा है।